जबी हुई है धस अ इसके चारो तरफ पौधे बहुत बड़े बड़े लगे हुए है साइड मे एक रोड गई है जो की डाम्बर रोड है।

अपने कानो में लगा रखा है और किसीसे बाते पीछे की तरफ बुक स्टाल है जिसमे बहुत सारे बुक्स --

ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लक्ष्मी प्रोव्हिजन एंड जनरल स्टोर लिखा हुआ है सामने--